विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर साइलैब संस्थापन के इस स्पोकन ट्यूटोरियल याने मौखिक ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है
मैं विन्डोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर साइलैब 52 वरज़न याने के संस्करण की संस्थापना करुँगी
यह प्रक्रिया साइलैब के सभी वरज़न्स और विन्डोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे वरज़न्स के लिए अनुकूल है
scilabओआरजी वेबसाइट से आप साइलैब को डाउनलोड कर सकते है
प्रोडक्ट्स प्रोडक्टस् में जाकर डाउनलोड को चुनिए और क्लिक कीजिये नीचे स्क्रोल कीजिये और विन्डोज़ अनुभाग में से साइलैब 522 को चुनकर क्लिक कीजिये
यह एक्से फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक संवाद बक्सा खोलेगा
सेव फाइल पर क्लिक कीजिये यह एक्से फाइल को डाउनलोड करना शुरू करेगा
यह प्रक्रिया कुछ मिनट लेगी
मैं इसे मिनीमाइज़ करती हूँ
मैं ब्राउज़र को मिनीमाइज़ करती हूँ
साइलैब को डाउनलोड करने के लिए सीधी लिंक दी गयी है
संस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करे की आपका कंप्यूटर इन्टरनेट से जुड़ा है
संस्थापन की प्रक्रिया के समय इंटेल मैथ कर्नल लाइब्रेरी को डाउनलोड तथा स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है
मैं इसे मिनीमाइज़ करती हूँ
संस्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो सेटअप फाइल डाउनलोड की है उसपर डबल क्लिक करे
रन पर क्लिक करे और अंग्रेज़ी के रूप में सेटअप भाषा को चुनिए
ओके क्लिक करे
यह सेटअप विज़ार्ड शुरू करेगा
नेक्स्ट पर क्लिक करे
लाइसन्स अग्रीमन्ट को स्वीकार कीजिये और नेक्स्ट पर क्लिक करे
आपके कंप्यूटर पर साइलैब संस्थापन के लिए एक गंतव्य फोल्डर को चुने
नेक्स्ट पर क्लिक करे
फूल इन्स्टलैशन याने फूल प्रतिष्ठान को चुने नेक्स्ट क्लिक करे नेक्स्ट नेक्स्ट संस्थापन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इंस्टाल पर क्लिक करे
इन्टरनेट से जुड़ने के लिए ओक पर क्लिक करे
यह इंटेल मैथ कर्नल लाइब्रेरी को डाउनलोड करना शुरू करेगा
यह प्रक्रिया कुछ मिनट लेगी

इंटेल मैथ कर्नल लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है और साइलैब की संस्थापना शुरू हो गयी है
यह भी कुछ मिनट लेगा

संस्थापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फिनिश पर क्लिक करे
यह साइलैब 52 को आपके कंप्यूटर पर आरंभ करेगा
मैं इसे बंद करती हूँ
हमारे पास साइलैब पर अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल है
यह नीचे सूचीबद्ध है
भारत में साइलैब प्रयास को scilabइन वेबसाइट के माध्यम से समन्वित किया है
यहाँ कुछ रोचक परियोजनाएँ चल रही है
पाठ्यपुस्तक याने टेक्स्टबुक परियोजना जोकि साइलैब के प्रयोग से मानक पाठ्यपुस्तक में से उदाहरणों को कोड देता है
लिंक्स परियोजना उपयोगकर्ताओं को ज्ञात साइलैब आलेखों को जोड़ने तथा क्रमबद्ध करने की आज्ञा देता है
हम साइलैब कार्यशालाओं को आयोजित करने में भी मदद करते है
हमारे पास दो मेलिंग सूची है एक घोषणा के लिए और एक चर्चा के लिए
हम अपनी सभी गतिविधियों में आपको भागीदार होने के लिए आमंत्रित करते है
चलिए स्पोकन ट्यूटोरियल पर वापस चलते है
मौखिक भाग विभिन्न भारतीय भाषओं में उपलब्ध होगा
यह स्पोकेन tutorialओआरजी पर उपलब्ध है
साईलैब प्रशिक्षण में यह ट्यूटोरियल शून्य स्तर का एक भाग बनाता है
यह ट्यूटोरियल बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है
हम इस मार्ग के माध्यम से कई फॉस सिस्टम्स को समाविष्ट करना चाहेंगे
इन पर आपकी प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते है
हम सॉफ्टवेयर के लिए रूपरेखा लेखन में भी आपकी भागीदारी का स्वागत करते है
मूल स्क्रिप्ट या आलेख लिखने के लिए स्क्रिप्ट को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारतीय भाषाओं में स्क्रिप्ट का उपयोग कर ऑडियो डब करने के लिए ऊपर दिए सभी चीजों पर पुनरीक्षण और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका स्वागत है
हम इन स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए आपका स्वागत करते है
हम आपको इन स्पोकन ट्यूटोरियल के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी आमंत्रित करते है
हम ऐसे विशेषज्ञों की भी तलाश मैं है जो की ऑडियो विडियो तथा स्वचलित अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी समर्थन दे सकते है
हमारे पास इन सभी गतिविधियों के लिए निधिकरण है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
अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इस ट्यूटोरियल में जुड़े रहने क लिए धन्यवाद नमस्कार